ये एक क्रिश्चियन स्कुल है। जिसमें की बहुत सारे बच्चे क्राफ्ट बना रहै है।

कक्षा में एक अध्यापिका भी है जोकि बच्चों को निर्देशित कर रही है। कुछ बच्चे पीछे क तरफ लड़ाई भी कर रहे है और कुछ बच्चे शांति से अपनी ड्राइंग कर रहै है।